इस पिक्चर में हमें बहुत सारी फ्लावर नजर आ रहे हैं।

रंग बिरंगे फ्लावर्स नजर आ रे है।

हमें आस पास पेड़ पौधे भी लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें एक कार दिखाई दे रही है।

यहां पर हमें कार्स एक्टिवा बाइक्स पी नजर आ रही है।

ये स्कूल नर्सरी टू दसवींछ मात तक हैं।

लिखा हुआ नजर आ रहा है यहां पर हमें मोबाइल --

देखने में हमें ये सन्फ्लावर्स या मेरीगोल्ड लग रहे हैं।

कॉपीज बुक्स नजर आ रही हैं।